कमोड रखा हुआ है बहुत से लाइट दिखाई दे रहे है काँच का लगा हुआ दिखाई दे रहा है व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है जहा दो और मूर्तियाँ अं रिद्धी-सिद्धि अगल बगल मे है और माला चढ़ा हुआ है गणेश भगवान मे लड्डू चढ़ा हुआ है।

इस तस्वीर मे हमे बहुत सी मूर्तिया दिखाई दे रही है और गार्डन दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे पत्थर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमे किसी पानी नदी का तस्वीर दिखाया गया है जहा एक मूर्ति भी दिखाया गया है और उपर उसके बगल मे एक बहुत बड़ा किसी चीज का ओवर ब्रिज दिखाया गया है पार्क की तस्वीर है।

यह किसी पेड का तस्वीर दिखाई दे रहा है। यहाँ आकर विभाग का तस बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ किसी कॉ--